ब्लू कलर का बोर्डिंग भी लगा हुआ है दुकान में तरह-तरह के समान बिक रहे हैं।

मार्केट में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगिया भी दिख रही है। मार्केट में बोहोत भीड़ है।

बहुत सारे पंखे चल रहें है। एक कुर्सी और बहुत अलमारिया भी दिख रही है। खिड़कियां भी दिख रही हैं।

सारे झंडे को पहराने का कार्यकर्म कर रहे हैं।

यह एक शादी का समारोह है । शादी मे सिर्फ एक दूल्हा दिख रहा है ।

एक बोर्डिंग लगी है दुकान के आस-पास भी बहोत सारे बोर्डिंग लगी है।

लाइन के बगल में एक बस में दिखाई दे रही है लाइन के सामने बोहोत बड़ी एक --

सामान भी दिखाई दे रहे है।

यह एक स्कूल के दृश्य है इस स्कूल में बहुत सारी बच्चियाँ दिखाई दे रही हैं।

नीचे टेबल रखे गए है टेबल पे कुछ समग्री है।

टेबल के किनारे बहुत सारे कुर्सियाँ भी हैं | बहुत सारे व्यक्ति अंदर हैं |

रेलवे स्टेशन के छतो पे एस.बी.आई. का बोर्डिंग भी लगा हुआ है।

सारे घर तालपत्रे से ढके हुए हैं | कुछ ही घर पत्थरों से बने हुए हैं | बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी --

देखे जा सकते है। बोहोत बड़े-बड़े और छोटे-छोटे भी आलू दिखाई दे रहे है। आलू पे --